इधर बड़े बिल्डिंग है हाउस है बड़े पेड़स है एक ब्लू कलर बोर्ड है।।

इधर बड़े रोड है मट्टी है दुपान केस जीप उ है कड्डीस है लेडिस नील --

ऐ एक आदमी मिलकर चाभी देखता है एक छोटा बोर्ड है।

बोटिल्स है व्हाइट कलर है पिंक कलर है लाल कलर है सोप्स है अच्छा है।

साइड छोटा छोटा पेपर साइज करेंट पिलर्स स्तम्भा है।

इधर एक जंगल है जंगल के पास सारा के मैदान है डील है ऊपर से देखता है छोटा-छोटा आइस --

जो है वाटर है के मैदान है रेलवे ट्रैक है।

इला में मसाला के मीट का चिकन का सांबार का मसाला पाउडर--

इधर नेशनल फ्लैग का वर्क होता है एक आदमी क्या भी कलर देखता डालता है एक आदमी मिलकर क्या भी देखता है एक--

मिलकर पैंट में हैंडस डाले को सेल्फी देख अ इधर साइड देखता है फोटो पढ़ लेता है शूज है।

इधर एक पुजारी है पुजारी के ऊपर आदमी फोर पांच आदमी--

इधर एक आदमी मिलकर क्या भी देखता है छोटा-छोटा रिक्शा है बड़े रिक्शा है लाल कलर है पील कलर है।